यहाँ पर एक दिखाई दे रहा हैपलंग बोलते हैं दो तकिये भी डले हुए हैं दो कंबल भीदिखा रहे हैं।